और प्लास्टिक के गमले भी नजर आ रहे हैं और उनमें पेड़-पौधे भी नजर आ रही है और नीचे टाइलें लगी हुई --

और कांच की फिटिंग हुई हो रही है।

और झंडा भी नजर आ रहा है।

पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है।

और यहां पर जिम करने का बहुत सारा सामान नजर आ रहा है।

एक प्लाई भी नजर आ रही है।

और बहोत सारे वो कार नजर आ रहे हैं।

और एक टंकी भी नजर आ रही है।